यहां पर हमें दो दुकान नजर आ रही है एक वाइन की दुकान है और--

और ठीक दुकान के सामने में दो स्कूटी दिखाई दे रही हैं।

और यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो नदी का व्यू देखने आए हैं नदी के ठीक।

और नदी की पीछे पेड़ों की फोटोशूट कर रहे है।

और बहुत बड़ी टीवी और बहुत सी कीमती चीजे रखी गई है।

विद्यार्थी बैठे हुए हैं उन विद्यार्थियों को एक शिक्षक।

ये इस चित्र में हमें चार पांच गाड़ियां मतलब कार ।

यह चित्र हमें एक बन बिभाग का चित्र दिखाई दे रहा है जहाँ पर लोग।

ये चित्र एक मंदिर का चित्र है जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर का चित्र है इसमें।

इसके सामने भी फूल का पेड़ दिखाई दे रहा हैं हमें और इसके पीछे में।

ये चित्र एक होटल का चित्र हैं जिसका का सामने एक बहुत बड़ी सी कार नज़र आ रही हैं ।

और उसके जस्ट साइड में एक बड़ा सा लकड़ा रखा गया है चाकू रखी गई है।

इस चित्र में हमें तीन से चार ट्रेने दिखाई दे रही है पटरियाँ दिखाई दे रही है।

जो जो जहाँ पर बहुत से लोग पोहे खाने के लिए जाते हैं।

ये घोंधिया का मशहूर होटल हैं जहाँ पर पोहा मिलता हैं।

पटाके पन्नारफुलजड़ीआदि।

कुछ गाड़ियाँ साइकिलें और बहुत सारी चीजे दिखाई।

छोटे बच्चे की गाड़ी साइकिल झूला आदि चीजें हमें यहाँ दिखाई दे रही है।